यहां बहुत से बड़े-बड़े बिल्डिंग भी बने गए है।

यहाँ बहुत सारे तरीके के मसीन हैं।

ये स्टेज के ऊपर काफी सारे लाल लाइटें लगे गई है ।

यह यहाँ पर एलेवेन ट्वेल्थ के बच्चे आते-आते रहते हैं।

यहां बहुत सारे तरह के चॉक्लेट थी।

जो की सुपौल में है।

उत्पादक सहकारी संग लिमिटेड है ।